बस पे वाइट कलर का कुछ ब्रश से पेंटिंग किया हुआ है एक स्टार दिख रहा है वाइट कलर का सामने एक इलेक्ट्रिक पॉल दिख रहा है बाजु में एक बस दिख रही है।

ब्राउन कलर टेबल के ऊपर टिश्यू पेपर प्लाट रखी हुई है चेयर्स दिख रही-- ब्लैक कलर की एक हैलमेट दिख रही है ब्लैक --

दिख रहा है जिसपे गया जंक्शन लिखा हुआ है। बोर्ड के बाजू में एक ट्रेन दिख रही है जोकि रेडिश कलर की है थोड़ी-सी ग्रे कलर की है। इसकी ब्लैक --

इस इमेज में हमे एक ब्राउन कलर का टेबल दिख रहा है| टेबल पे वाइट कलर की प्लेट है उसमें छोला -भटूरा दिख रहा है।